यह कोई रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

यह एक बस्तर डेरी फार्म के नाम से दुकान दिखाई दे रही है।

और कुछ वाशिंग मशीन भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है और शोरूम के अंदर बहोत लाइट भी लगी हुई है।

मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे एक कुत्ता--

यह एक रोड की फोटो है।

जिसमें बहोत सारी हरी टोपी लगी हुई है।

जो कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं।

बहुत सारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं।